एक दुकान है जो बहुत ही बड़ी है यहाँ पे ला एक आदमी एक लड़के के दाढ़ी बना रहा है यहाँ पे जाल सी तीन टोकरी रखी हुई है जिनमे कुछ डिब्बे रखे हुए हैं दो आदमी अपना काम कर रहे हैं एक पानी की टंकी रखी है।

इस दुका दुकान के ऊपर टिन का तख्ता लगा हुआ है। इसके अंदर ढ़ेर सारी लाइटें जल रही हैं।

एक लतारगा है जो बहुत ही खूबसूरत है यह हरे और सफेद रंग का है।

यह एक घर है जो बहुत ही अच्छा है। जो सफ़ेद रंग का है इसका गेट अ भूरे रंग का है।

जो बहुत ही बड़ा है और काफी खूबसूरत भी लग रहा है इसका रंग सफ़ेद है |

इसके बाहर एक दो पेड़ लगे हुए है इसका सरियों से बना हुआ है जिस पे कुछ हरे पत्ते लगे हुए है इसके बाहर एक दो बाइक खड़ी हुई है |

इस्टोर है जो बहोत ही बड़ा है। इसके बहार और अन्दर बहोत सारी लाईटे लगी हुई हैं इसका श-श-शटर नीले रंग का है।

यह एक इंटेरिओ है जो बहुत ही अच्छा है और देखने मे काफी बड़ा भी है इसके पास मे एक ह --

जा रहा है यहाँ पे बहुत सारी मेज कुर्सियाँ पड़ी हुई है जो सफेद रंग की है जिसके अंदर बहुत सारी लाइट लगी हुई है यहाँ पे एक अलमारी रखी --

यह एक सर्विस सेंटर हैजो बहुत ही अच्छा है। इसका रंग गुलाबी और काला है।

यह कॉलेज लाल और सफेद रंग का है इसका दरवाजा लोहे का बना हुआ है जो काले रंग का है।

यह नीचे एक कालीन बिछी हुई है जो हरे रंग की आस पास पेड़ पौधे बहुत है और कुछ लोग आपस मे बात कर रहे है।

इसके आस पास बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए है इसका दरवाजा कांच का बना हुआ है इसके पास का दरवाजा लोहे का है।

एक मॉल है जो बहुत अच्छा है जो कांच का बना दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर बहुत सारे लाइटें लगी हुई हैं और बहुत कमरे भी हैं | एक दो स्टैचू नजर आ रहे हैं जिसने फ्रॉक पहन रखी है इसके आगे एक लड़की बैठी हुई है।